पिंक कलर का और रेड कलर का बोर्ड है। अंदर बोहोत बड़ा गेट है। झाड़ दिख रहा है।

दो एक ऑफिस बना हुआ है। चेयर लगा है। ब्लैक कलर का सामने का दरवाजा बना हुआ है।

प्लास्टिक के कुछ सामान टांगे हैं कुछ डब्बों में रखे हैं|

ब्राउन कलर का है यीशु मसीह बैठे हुए पोज़ मे कुछ बताना चाह रहे हैं। सफेद कलर का दिवाला है।

और ये डेकोरेशन किया झालर किया हुआ है।

बा बैंड बाजा है। किसी घर में लगा हुआ है। पंखा दिखाइ दे रहा है। पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

या एक रोड है। रोड पर लोग आ जा रहे हैं। रिक्शा खड़ी है सामने ब्रिज है।

यह मुझे एक बच्चे के प्रकार के बच्चों का कुछ क्लासेस जैसा लग रहा है।